यह एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जोकि काफी बड़ा है और स्टेशन के ऊपर--

यह एक कार का शोरूम दिखाई दे रहा है जो कि काफी बड़ा और सुंदर है इसमें काफी सारी कारें खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

किराने की शॉप दिखाई दे रही है जो कि काफी बड़ी और सुंदर है और सभी दुकान ये भरी हुई नजर आ रही है।

और इस शोकेस में काफी सारे एक जैसे कंटि भी पड़ी हुई है शिवलिंग भी पड़े हुए हो जो कि काले रंग में है अगरबत्ती वाला भी समान पड़ा हुआ--

गौशाला दिखाई दे रही हैं काफी गऊयें खड़ी हुई है जोकि अलग अलग कलर में हैं।

और वाइट कलर की दीवार पर सामने वाली पर एक ए_सी लगा हुआ नजर आ रहा है और ऊपर छत पर दो लाइटिंग लगी हुई है।

इंसान बने हुए नज़र आ रहे हैं आदमी की पिक्चर लगी हुई है और ऊपर वाली पे एक पंखा लगा हुआ--

और उसी के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर--

और शीशों के ऊपर काफी सारे बैलूंस भी लगे हुए हैं पास में काफी गमले पड़े हुए हैं जिसमें पौधे लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहे हैं सामने एक काउंटर भी पड़ा हुआ है जिस पर काफी डिब्बे दिखाई दे रहे है।

और पास में दीवार के ऊपर एक व्हाइट रंग का बड़ा ए_सी लगा हुआ है और बेड के पास दो चेयर्स पड़ी हुई है जो की लाल रंग में हैं।

व दूसरी तरफ जो की मेज पड़ा हुआ है उस पर ब्लैक कलर के कंप्यूटर सी_पी_यू पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक पैलेस हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें काफी--

यह एक हाईवे दिखाई दे रहा है जो कि काफी लंबा और सुंदर है और उस हाईवे के ऊपर एक टोल प्लाजा बना हुआ है।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जोकि काफी बड़ा है और इसके ऊपर एक बेड लगा हुआ है जो ब्लैक और वाइट कलर में है।

और दीवारों का कलर जो वाइट है।

बारियों मे काफी समान पड़ा हुआ है जैसे कि धूप अगरबत्ती भी पड़ी हुई है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर बाहर से रेड मैरून और पीच कलर का है उस बिल्डिंग के बाहर --